नदी के किनारे काफी बड़े बड़े हरे भरे पेड़ पोधे लगे हुवे है ब्रिज के ऊपर सड़क बनी हुई है।

इस स्टेज पर काफी सारा फूलों का डेकोरेशन हो रहा है पीछे थोड़ा रेड रेड सब पर्दा लगा हुआ है आगे गुलदस्ते लगे हुए हैं।

यह एक नदी है नदी में दो व्यक्ति बोटिंग कर रहे है दोनों ने ही सेफ्टी जैकेट पहनी हुई है नदी के किनारे पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक सोफा बिछा हुआ है काउंटर बना हुआ है काउंटर पर तीन सौ साठ सैलून लिखा हुआ है काफी सारा मेकअप का प्रोडक्ट रखा हुआ --

यह एक कपड़ों का शोरूम है उसमें काफी सारे कपड़े ब्रांडेड रखे हुए हैं जो ले हैं एक लेडिस खड़ी हुई है।